बिल्डिंगो में बहोत सारे दुकानें बनी हुई हैं। सड़क पर मुझे बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।

पार्क सा नज़र आ रहा है। पार्क के साइड में कुछ मुझे न-लगी हुई नज़र आ रही है।

जिसमें टेंट लगा हुआ मुझे नज़र आ रहा है। साइड में कुछ झाड़ मुझे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और झाड़ के साइड में एक बहोत बडी सी मुझे बिल्डिंग नज़र आ रही है।

और पीछे दीवाल पर ऐ_सी लगी हुई मुझे दिखाई दे रही है।

यहाँ पे मुझे कुछ जंगलों सा दिखाई दे रहा है जिसमें बोहत सारे हरे-हरे झाड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

मुझे यहाँ पे बहोत-ही बड़ा सा पहाड़ नज़र आ रहा है।

में मुझे कुछ लाइटें नज़र आ रही हैं और कुछ लोग मुझे यहाँ पे खड़े नज़र आ रहे हैं।

जिसमें कुछ लोग भी बैठे हुए हैं। यहाँ मुझे एक टेबल भी दिखाई दे रही है। इसमें कुछ चेयर वगैरह भी आइट-साइट लगी हुयी हैं।

यहाँ पे एक आदमी कंप्यूटर में काम कर रहा है।

जहाँ मुझे रेल की पटरियाँ दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे कुछ लोहे के खम्बे लगे मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ऊपर टीन सेट डला हुआ है।